ऊँची - ऊँची पेड़ छोटे बड़े सभी प्रकार के यहाँ पेड़ हैं पहाड़ियाँ दिख रही है व घनेरे बादल दिख रहे है कितना सुंदर मौसम दिख रहा हैं आ --

सुंदर से आसमान नीला कलर का कितना प्यारा व्यू दिख रहा है यहाँ पे काफी लोग घूमने आते है इस व्यू को देखने के लिए आप भी इस व्यू को --

ये जो आप इमेज देख रहै है ये सी सी एम मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड सारे कोर्सेस कराये जाते है।

और यहाँ से अपना डिप्लोमा जो एमबीबीएस का करना है वो सारी चीज़े करते है।

यहाँ एक मॉल है यह देखने में बहुत ही प्यारा है यहाँ पे लो लो से हाई कवालिटी तक के लोग आते है यहाँ ब्रांडेड चीजे --

और लोग यहाँ आके मूवीस और भी चीजों को देख सकते है।